इस फोटो में हमें ब्लू कलर से भारतीय स्टेट बैंक लिखा दिखाई दे रहा है।

एक आदमी जो थोड़े बूढ़े दिख रहे हैं वह वाइट शर्ट और ब्लू पेंट में बैठे हुए हैं।

इस फोटो में हमें एक छोटा सा डैम दिख रहा है।

वो एक चेयर पर बैठा हुआ है।

लेफ्ट साइड में हमें दो छोटे ऑरेंज कलर के कोंस दिख रहे हैं।

लेफ्ट साइड में एक इंसान व्हाइट टीशर्ट में खड़ा हुआ है और उसके पीछे से सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं।

और ये एक गराज की फोटो है जहां पर नीचे हमें गराज के बहोत सारे इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं और लेफ्ट साइड में एक और कार खड़ी हुई है।

जिसके आगे रेड कलर से वेलकम लिखा हुआ है।

लेफ्ट साइड में एक बड़े से मटके में बहुत सारे फूल हैं।

पीछे हमे व्हाइट और रेड कलर की एक बिल्डिंग दिख रही है जिसकी टू फ्लोर्स हैं और जिनकी खिड़कियां खुली हुई है।

फोटो में हमें एक मेला दिखाया हुआ है जिसके आगे प्रणाम लिखा हुआ है।

राइट साइड में बच्चों का खेलने का एरिया है और ऊपर कुछ बैलून दिख रहे हैं।

और किनारे के आगे हरे भरे पेड़ हैं।

और इनके आगे एक्टिवास खड़ी हुई है स्कूटी जो रेड ग्रीन और ब्लू कलर में है।

और पीछे एक बिल्डिंग भी है जो येलो कलर की है।

हमें अलग अलग तरह की गाड़ियां जो पेट्रोल भरवाती दिख रही है।

इस फोटो में हमें कुछ घर दिख रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

जिनपे ये चांद और तारा बना हुआ है।

इस घर के आगे बहोत सारी कुर्सियां रखी हुईं हैं।

राइट साइड में एक औरत है जिन्हें मैरून कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

जो मंदिर है वो वाइट येलो कलर का है।

हमें पिक्चर में सेंटर में दो ई रिक्शा दिख रहे हैं।

फोटो में हमें पीछे एक बड़ा सा कथकली मास्क दिख रहा है जो ग्रीन रेड और कलर का है।

जिसके आगे दो लोग भाला लेके खड़े हुएं हैं जहां इसकी पहरेदारी कर रहें हैं।

उसके आगे हमें बहोत सारी बाइक खड़ी दिख रही हैं।

इस फोटो में हमें एक झरना दिख रहा है और नीचे कुछ पत्थर दिख रहे हैं।

इस फोटो में हमें रेड से एक बोर्ड पर इंग्लिश में अग्नि बेकर्स लिखा दिख रहा है।

जहां लेफ्ट साइड में एक रास्ता है जो यहां तक जा रहा है।

आगे एक बेंच पर एक औरत बैठी हुई हैं जिन्हें ऑरेंज कलर का सूट पहना हुआ है।

लेफ्ट साइड में कुछ बच्चे पार्क पे खेलते हुए झूलों पर खेलते हुए दिख रहे हैं।

राइट साइड में हमें कुछ हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं और बीच में एक रास्ता है।

और इस झूले तक आते हुए पेमेंट लॉक्स बने हुए हैं।

इस फोटो में हमें छह बसेस दिख रही है जो वाइट ग्रीन और ऑरेंज कलर की है।

पत्थर है और जिसके ऊपर एक पेड़ है जो बड़ा सा है और हरे रंग का है।

हमे इस फोटो में पीछे एक कार भी दिख सकती है।

बीच में एक इंसान खड़ा हुआ --

जहां पे ब्लू कलर का बोर्ड है जिस पे फिलिप्स लिखा हुआ है।

नीचे गोविंद बी वी बुलसारा लिखा हुआ है।

रेड कलर का एक बोर्ड है जिसपे वोडाफोन और रुपीस फाइव ज़ीरो नाइन लिखा हुआ है।

डेकोरेट किया हुआ है पिंक येल्लो और ग्रीन लाइट से --

इस फोटो में हमें लेफ्ट साइड बहोत सारी चेयर रखी दिख रही हैं जिनके आगे दो सोफे लगे हुए हैं।

और ये एक रेड कलर की बिल्डिंग है जिस पे शीशे हैं।

ये एक दुकान की फोटो है जहां पे हमें अलग अलग तरह के स्टेशनरी आइटम्स दिख रहे हैं।

राइट साइड मे हमे पेन दिख रहे हैं जिनपे टैंगो लिखा हुआ है।

इस फोटो में हमें एक छोटा सा गार्डन दिख रहा है जहां पे तरह तरह के व्हाइट रेड और पिंक कलर के फूल दिख रहे हैं।

इस फोटो में हमें कुछ लोग दिखाए हुए हैं।

वो कोई अवॉर्ड एक महिला को दे रहे हैं।